ये मस्जिद का मीनार बना हुआ है जिसके ऊपर इंडिया का झंडा लगा हुआ बाहर पार्क बना हुआ है और--

को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है बाहर एक गाड़ी खड़ी है और बाहर टूटी-फूटी सड़क है और--

और दरवाजा लगा हुआ है जिस परे लिखा हुआ है पुश करें इसको दबाएं और इसको घसीटें।

इस तस्वीर में एक स्टोर सा बना हुआ है उसके बारे एक लड़का करा है जिसने--

जो है ना उसको पेंट जो है वो नीले रंग का हुआ ऊपर येलो रंग का पेंट हुआ है ।

जो बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स ये पार्क है और यहां पे क्यारिया से बनी हुई है और--

और इसमें जहां तक ध्यान वाला समुंदर ही समंदर है और--

और यहां पे पानी पे साफ हैऔर--